मुझे इस पिक्चर में एक आइसक्रीम कॉर्नर दिख रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक फिश मार्केट नजर आ रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक डी मार्ट नजर आ रहा है।

मुझे ये इस पिक्चर में एक वॉटरफॉल दिख रहा है।

वाटरफॉल के नीचे कुछ पत्थर भी रखे हुए हैं।